बहोत तरह के बैलून्स लगे हुए है काले और पीले रंग कि बैलून्स --

कुछ लोग आए है तस्वीर उनका --

इस तस्वीर में अपेक्स टेक्नोलॉजी --

उसमे बहोत सारे पेड़ भी है।

इस तस्वीर में बुद्ध भगवान कि मूर्ती है इसमें जो पिला कपड़ा पहने हुए तस्वीर है बहुत सारे .

इस यह तस्वीर हब्स इंस्टिट्यूट आफ नर्सिंग कि है इस तस्वीर में एक ब्लैक कलर की वैन खड़ी है जिसमे ना --